इस पिक्चर में देखिये आपको एक जे_सी_बी दिखाई दे रही होगी जोकि गड्ढा खोद रही हैं। यहाँ पे देखिये कुछ लोहे के पाइप भी पड़े हुए। यहाँ पे एक ब्लू कलर की मशीन रखी हुई हैं। यहपर कुछ मट्टी पड़ी हुई हैं।

देखिये आप को एक बड़ा-सा टीन दिखाई दे रहे होंगे। दो टीन रखे हुए हैं यहाँ पे यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए बोरी मे आपको कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ।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

वॉल पर एक वॉच लगी है। वॉच के बाद फेन लगा है। देखिये यहाँ पे दीवार पे बलुन लगा हुआ रेड और ब्लू कलर का । यहाँ पे खिड़की है खिड़की पे ग्रीन कलर का करटेन लगा हुआ है। भीड़ लगी हुई है।

यहाँ पर लेफ्ट हैन्ड साइड मे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। राइट हैन्ड साइड मे आप को एक ब्लैक कलर की हुडी अ छपरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कुछ बच्चे बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई--

देखिए आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे और कुछ पिक्चर्स भी होगी यहाँ पे । और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और वॉल का कलर यहाँ पे जो फर्स है वो ब्राउन कलर की है।

वॉल पर एक पोस्टर दिखाई देगा । देखिये यहाँ पे वॉल का कलर येलो ओर व्हाइट है। यहाँ पे जो विंडो लगी हुई है वो ब्लैक कलर की है। यहाँ पर एक चैर पड़ी है ब्राउन कलर की।

यहाँ एक ठेला दिखाई देंगी। ठेला के बैक साइड देखेंगे तो आपको और दो साइकिल दिखाई दे गे। यहा पर शटल लगा है ब्लैक कलर का और देखिए रोड पे एक रिक्शा चल रहा है। देखिए शटल के बगल मे कोई अंकल देखाई दे रहे होंगे।

आपको दो चेयर दिखाई देंगी रेड कलर की। देखिए यह उसके सामने दो मिरर दिखाई देंगी। दो बड़े-बड़े लेकिन मिरर के जस्ट ऊपर एक क्लॉक दिखाई देंगी। क्लॉक के पास आप को एक फैन दिखाई देगा। और फैन व्हाइट कलर का है।